फोटो जो एक सैलून का पिक्चर है जिसमें एक मसाज चेयर है।

ये फोटो में एक औरत जो ब्लू कलर का बैग --

दुकान में एक इंसान बैठ के है।

बोर्ड लगा है जिस पर मानसरोवर स्टेशनरी ग्रीन कलर का लिखा हुआ है।

यह फोटो जो एक स्टेट बैंक आफ इंडिया का ए_टी_एम का फोटो है जिसमें इंसान बहुत ज्यादा इंसान लाइन बना रहे हैं।

ब्ल्यू कलर का टेबल है और वाइट कलर का दो ठो शेल्व्स है।

रेड कलर का एक बैनर वाइट कलर का स्टेयारकेस और रेड कलर का पांच शटर है।

यह फोटो में दो औरत व्हाइट कलर का साड़ी और घाघरा पहन के हैं।

ये फोटो में एक येलो कलर का बिल्डिंग दिख रहा है।

ये फोटो में बहुत ज्यादा बैनर एडवरटाइजमेंट लग के है।

जिसका साइड में एक अचार का डब्बा--